यह टी_वी की दुकान है यहा पे काफी सारे टी_वी भी रखी लगी हुई है अलमारी मे ये दीवार टीवी है ये दीवार मे लगाई जाती हेगी ।